यह नदी बहुत ही चौड़े है।

यह पेट्रोल पंप पर एक टोटो लगी हुई है एक --

ये अपने-अपने काम कर रहे हैं | सभी लेडिज़ एक एक कर अ अ लाइन से जा रही --

बॉल भी रखे हुए है यह अच्छे दाम पर --

बैंक भी है यह केनरा बैंक है।

यह मैदान बहुत ही अच्छे मैदान हैं | यहाँ एक मं --

यहाँ कोई वैवाहिक कार्यकर्म हो रहा है।

यह पार्क महात्मा गाँधी चिल्ड्रेन पार्क सुपौल के हैं।

जो यहाँ किसान इस नदी से पटवन करते हैं बहुत ही --